पेड़ के नीचे बहुत सारे लेडिस और जेंट्स बैठे दिखाई दे रहे है।

जो चेयर पर बैठे दिखाई दे रहे आपस में बाते करते हुए--

ये एक बहुत बड़ा पिंक कलर का गेट दिखाई दे रहा है जैसे राजा महाराजाओं के टाइम होता था इस टाइप का।

पार्टी का माहौल नजर आ रहा है टेबल्स पर कुछ बियर रखी हुई है एक पानी का कैंपर नजर आ रहा --

एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है।

बाइक आते हुए वे जाते हुए नजर आ रही है कुछ बाइक्स खड़ी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी लेडिज रंग बिरंगी कपड़ों में नजर आ रही है और जेंट्स भी बहुत --

दो चार आठ चेयर लगी हुई है।

गांव में पहले पुराने टाइम झोपड़े बना हुआ करते थे।

ये यलो कलर की नजर आ रही है उस पर द्वित्य श्रेणी नाम लिखा हुआ है और बहुतसारे --

एक जाली जाली बिछा रही है उसके ऊपर ग्रिट और मसाला डाल रहे हैं शाम --

डेकोरेट की हुई है दुकान की छत पर लाइटें भी नज--

के अंदर बहुत सारी लेडीज और जेंट्स दिखाई दे रहे है सबके ऊपर मास्क पहना हुआ है एक जेंट्स के --

जे_एस फाइव रूम में खाली दिखाई दे रही है एक बक्से में कुछ बुक्स दिखाई दे रही है और दीवार में कुछ--

एक दूसरे के सामने कर रहा है एक व्यक्ति सफेद दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ है।

पेड़ दिखाई दे उसके पास में कचरा पात्र भी रखा हुआ है एक इस --

बड़ी पेट्रोल पंप वाली गाड़ी खड़ी नजर आ रही है और कुछ बाइक्स नजर आ रही है।

ये पार्टी के लिए आए हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं और केक ऊपर नाम लिखा है।

रखा हुआ नजर आ रहा जो कंपटीशन बच्चों कर रहे हैं कुछ चित्र वगैरा बना रहे हैं कुछ --

और कुछ भी कर रहे है और टीचर और मैम उनको--